झूले कुछ लड़के लड़किया खेलते हुए दिखाई दे रहे है पार्क में सुन्दर सा एक पार्क दिखाई दे रहा है.

ये हमे एक दुकान के टेबल पे रखी हुई कुछ मछलिया दिखाई दे रही दे रही है। इस्पे कुछ रेड सा--

बहार बिल्डिंग के सामने एक बड़ा सा ग्राउंड है। ग्राउंड में पेड़ लगे हुए है तीन। एक पेड़ के निचे दो पुलिस वाले ख-खड़े हुए है।

जो पूरी पॉलीथिन से कवर हो रही है कार के पास एक --

एक झरना बह रहा है पहाड़ी में से चारो तरफ बड़े-बड़े से पेड़ लगे हुए है।

बंसल क्लासेस का एक बोर्ड लगा हुआ है यहाँ--

शेड लगा हुआ है शेड के निचे एक लड़का खड़ा हुआ है वाइट शर्ट ब्लू पैंट पहने हुए है।

ये एक मकान का निर्माण कार्य--